कैन तूल रही हैं और इस तरफ एक कूलर भी रखा हुआ हैं उस पर भी एक कैन रखी हुई हैं और एक पंखा भी लगा हुआ हैं शायद दूध का हैं ये--